ऊपर गमले रखे हुए हैं।

और हरे कलर के ये पेड़ पौधे हैं।

बस खड़ी हैं यहां चार।

पीछे रोड है आगे एक अंकल हैं काले बाल हैं।

कढ़ाई है इसमें चमचे से खाना बन रहा है।

सफेद कलर कि गाड़ी है।

और ऊपर आसमान नीला है।

यहाँ पे एक पेड़ है हरे कलर का।

सफेद कलर की गाड़ी है।

एक कमरा है सनी ये हरे कलर का कमरा--

बाहर चार पांच डब्बे रखे हैं गुलाबी कलर के।

और कुर्सी हैं स्किन कलर की।

और नीचे जमीन है ब्राउन कलर की।

ब्लू कलर की टी र्शट में एक पिंक कलर की --

और तीन मोटरसाइकल खड़ी है जो काले कलर की है सामने एक अंकल खड़े हैं।

लाल कलर का एक पैकेट है और ब्लू कलर का नीले कलर का पैकेट है।

और सामने लाइट है दो।

और दो तीन चार मशीन है जिसपे मीटर लग रखा है तीन।

एक सफेद कलर की जाली है।

एक लड़का पानी से धो रहा है।

काले कलर की एक दो तीन मशीन है।

एक लाल कलर की दीवार है नीचे शटर रखा हुआ है।

एक साइकल पे लड़का है।

इसने लाल कलर की टी शर्ट पहनी है।

काले और गुलाबी कलर का एक सफेद और काले कलर का--

भीड़ लगी हुई हैं किताब

और सफेद कलर की मोटरसाइकिल है एक अंकल चेक वाले शर्ट में खड़े हैं।

एक अंकल हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं।

यहां बहोत बड़े बड़े टैंक रखे हैं छोटा एक छोटा टैंक है।

काले कलर का और सफेद कलर का।